क्लिनिक हैं हेल्थ क्लिनिक यहाँ बहोत से रोग ठीक किये जाते हैं जैसे की हृदय रोग डायबिटीज ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर गाढ़िया अस्थमा एलर्जी पेट दर्द बुखार गैस आदि बहोत तरह --

ये बुद्ध भगवान के मूर्ति बने हुए हैं बोहोत ही खूबसूरत है चारों तरफ पेड़-पौधों से घिरी हुई है लाइट भी लगी हुई है ब्यूटीफुल देखने में लगते हैं हरी हरे-हरे पेड़ है बहुत ही लम्बा मूर्ति है और बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहे है यहाँ यह।

यह यहाँ पे भोले बाबा का भोले बा महादेव पार्वती और गणेश जी है और नंदी जी है । हिन्दू धर्म में महादेव को --